दुकान के आगे एक कार रखी हुई है एक ऑटो रखी हुई है ऑटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है सामने रोड है रोड पर एक स्कूटी से आदमी जा रहा है।

यह एक दीवाल दिखाई दे रही है।

के ऊपर बहोत सारी सीढ़िया दिखाई दे रही है आस पास बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और पेड़ो के पास में कुछ मकान भी दिखाई दे रहे है।

बड़े-बड़े मकान दिखाई दे रहे है मकानों के पास पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ दुकाने भी दिखाई दे रही है।

गेट के पीछे एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है इमारत की दीवाल पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ हुआ है जिस पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है।